इसके आगे तीन सीढ़ियां भी हैं और बाजू में एक पौधा भी--

यहां पर नो पार्किंग का बोर्ड भी है यहां पर फास्ट टैग की दुकान भी है।